तस्वीर में बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं।

यहां बच्चे अपने करतब और नित्य दिखा रहे हैं।

यह तस्वीर बहोत ही बढ़िया दिख रही है।

कि यह किसी स्कूल के फंक्शन की तस्वीर है।

शायद यहां पर फेविकोल की फैक्ट्री का गोडाउन होगा और उसका ऑफिस --

जहां स्कूल में यह फंक्शन हो रहा है और बच्चे अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं।

इस तस्वीर को देखते से ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी तबेले की तस्वीर है।

या फिटनेस सेंटर की लग रही है।

इस तस्वीर को देखते से ऐसा प्रतित होता है कि यह किसी फंक्शन की तैयारी चल रही है।

इस घर मे बहुत ही बढ़िया फर्नीचर रखा हुआ है।

यहां पर तरह तरह के कपड़े मिलते होंगे।

और लोग यहां पर अपने लिए कपड़े खरीदते होंगे शायद--

इस तस्वीर में ऐसा प्रतीत होता है कि यहां कोई--

या फिर यहां से लोग कांच खरीद के अपने घर लगाते होंगे--

यह तस्वीर बहुत ही शानदार दिख रही है।

इस तस्वीर को देखते से ऐसा लग रहा है कि यात्री अपनी बस का इंतजार कर रहे हैं।

यह तस्वीर बहुत ही बढ़िया दिख रही है।

यह तस्वीर बहोत ही बढ़िया दिख रही है।

या फिर किसी वेयरहाउस के बीच में छोड़ी हुई जगह है जहाँ पे बहोत बढ़िया गार्डन बना हुआ है।

यह तस्वीर बहुत ही खूबसूरत लग रही है।

यह बिल्डिंग हाई राइज लग रही है।

यह कोई जिम भी हो सकता है।

यह तस्वीर बहुत ही खूबसूरत है।

इस सोलर सिस्टम से बिजली की खपत बहुत कम होती लगती है।

तस्वीर पे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई गारमेंट शॉप है।

यहां पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।